जितना अकड़ दिख रहा है बहोत सारे है।

बाइक भी थोड़ी दूर है।

अअ लाल कलर का इधर दिख रहा है। घोड़ा दिख रहा है। पंछी दिख रहा है।

आदमी यह समान दिख रहा हैं। फिर कार्टून बनाया पे पेंटिंग करके --

जे सी बी है। माटी वागेरह खोद रहा है और इधर कुछ लिखा हुआ है। उधर है। जिस कुछ --